यहां पर बहोत ही ज्यादा मात्रा मे कार रखी हुई है एक गा- काली है जोकि कांच भी उसमे लगा हुआ है एक कार सफेद है जोकि बहोत सुंदर है उसमे कांच और तार भी लगे हुए है जोकि काले कलर के है।

हमे यहाँ पर बोहोत सारी कुर्सियां डली हुई दिखाई दे रही है जो की काले कलर की है सफेद कलर की भी है यहाँ पर एक कुर्सी भी डली हुई है जो की बोहोत ही लाल कलर की सुंदर लग रही है।